और बहुत ही मजे करते हैं। पानी काफी साफ रखा जाता है और पानी साफ रखना जरूरी भी होता है।

आह हम एक बिल्डिंग देख सकते हैं और एक गाड़ी है और स्कूटी भी है| उस बिल्डिंग के प्रवेश द्वार को बहोत ही अच्छे से सजाया गया है।

बहुत ही बड़ा पानी का जगह ये दिख रहा है बहुत ही बड़ी नदी दिख रही है और यही कोई लोग भी उपस्थित हैंशायद यहाँ पे ये लोग घूमने आये हैं ।

यहाँ हम देख सकते हैं। कई सजाने के लिए सामान सब रखे गए है जैसे फूल परदे बहुत सारे सामान रखे गए हैं।